अठरह सौ बारह सौ एक सौ अठ्ठासी नंबर है।

पीछे एक नीले रंग का घर गेट दिखाना है।

एक फोटो भी है गणपति भगवान जी का।

और यहां पर औरतों के--

इस फोटो में सामने कफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।

सफेद रंग का केक दिख रहा है और एक बिल्डिंग दिख रही है लाल रंग की--

इस फोटो में सामने एक होटल दिखाई दे रहा है बाहर खाने पीने की फोटो लगी है कुछ पौधे लगे हैं।

एक शर्ट है पीछे कुछ पेड़ पौधे हैं।

इस फोटो में लाल रंग की कार दिख रही है एक दो अंकल दिख रहे हैं।

चार झंडे दिख रहे हैं एक पिला दो लाल और एक हरा रंग का चड्ढा दिख रहा है।

फ्रिज के ऊपर हॉर्लिक्स का डिब्बा है एक स्टिंग रखी है।

यहां पर टॉयलेट दिखाई दे रहा है जो इंग्लिश टॉयलेट है।